यहाँ अनेक तरह का भोजन मिलता है। खाना टेस्टी रहता है यहाँ का। यहाँ चाउमीन बर्गर बि पिज़्ज़ा और मिलता है।

देख सकते हे यह एक घर हैं कितना अच्छा लग रहा हे दिखने में यह झंडा का कलर है साइड साइड पेड़ हे मक़ाम कितना अच्छा लग रहा है।